तालाव में काफी सारा पानी भरा है।

यह एक बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है।

जिस पर कुछ गमले वगैरह रखे हुए नजर आ रहे हैं।

मैदान में छोटी छोटी घास भी उग रही है।

ऊपर एक झंडा भी लगा हुआ है।

यह एक बड़ी सी फैक्ट्री बनी हुई है।

फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं।